है चड्डा पहना है गले मे लाल दुपट्टा ओढ़ा है नारियल का पेड़ है पीछे नीचे बीछी हुई है रोड़े बीछी हुई है।

--एक पेड़ लगा है साइड में एक बड़ा सा मैदान है मैदान में जगह जगह पेड़ लगे हुए है।

ये साइड में चेयर रखी है रेड कलर की पीछे स्टार लिखा हुआ है एक लड़की खड़ी है चोटी बना --

ये दुकान है उसमे टसले जमे है कड़ाइया रखी हुई है ब-डिश रखे हुए है बैग टंगे हुए है झोले टंगे हुए हैं ऊपर डेकोरेशन का सामान टंगा--

बड़े-बड़े स्टूल लगे है एक अलमारी में रखी हुई पीछे की तरफ बड़े सारे बहुत सारे मंदिर बैठे है बास्केट रखी है पीछे दो ऑरेंज और ब्लू कलर की बास्केट है।

एक तो झंडे का वो दिना दिया हुआ हैं साइड में पेड़ लगे हुए हैं और पीछे की तरफ एक पेड़ हैं लाइटो से सजा हुआ हैं आदमी लोग खड़े हुए हैं अंदर--